खंबे जैसे चाकू जैसे तलवार जैसे सियार से जाली घेरा गया--

यह पर यहाँ पे छोटा बंधवा है पथरा से जोड़ा गया है और पेड़ दिखाई दे रहे है

यहाँ पे पुरानी खंडर है ब उम कछुए जैसा ऊ-ऊ सिर वाला पत्थर है और हरी-भरी पेड़-पौधे है।

और मस्त-मस्त फूल के पौधे है आसमान दिखाई दे रहे है।

आप यहाँ देख ही सकते है की बहोत सुन्दर नज़ारा दिख रहा है।

यहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा अभी स्टार्ट होने वाला है अभी सब लोग गेम खेलेंगे और ये दर्शक हैं।

यह हमर नोकर होत के समान होता है यह सभी घरों मे जा जाके पत्र पहुचाता है और हमारे सूचकों द्वारा पहुंचाया जाता--

यहाँ देहात क्षेत्र है और यहाँ पहाड़ दिख रहे हैं झाड़ी बड़े-बड़े पेड़ और ये तार खींचा गया है।

यहाँ तरह-तरह के पर्दे है एहा ढाई तीन सौ में मिल जायेंगे और इसे लगाने में घर की सुंदरता बढ़ती है और यह बहुत अच्छे दिखाई देते है।

और स्कूटी बाइक खड़ी है व्यक्ति एक बैठा हैऔर उधर आदमी लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं।